गाजर है फूल गोभी है टमाटर है प्याज है तराजू है।

लोग है पन्नी है टब है ट्रे है दुकाने है।